आपने कभी रेसिंग की हो तो बताना---

तस्वीर में दिखाया गया है कि ये एक कॉफ़ी कैफ़े है यहाँ पे कॉफ़ी पी सकते है कुछ खा-पी भी सकते है यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है तेलगु भाषा में लिखा हुआ भी है यहाँ पे बैठ के लोग कॉफ़ी पीते है बात-चीत करते है।

यहां पर कोई गेराज है जहां पर गाड़ियां से समलती हैं गाड़ियां खराब हो जाती है पंचर हो जाता है या कोई स्क्रेच आ जाता है गाड़ियों में तो यहां ठीक किया जाता है बहुत ही बड़ा गैराज है यहाँ पे बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं यहाँ पे ठीक की जा रही है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि पर्यटक है वो बैठे हुए हैं पानी के अंदर शिप के अंदर वो यहाँ पे शिप को चला रहे हैं पर्यटक यहाँ पे घूमने आए हुए हैं पानी का उन्होंने वो भी कोट भी पहन रखा है जिससे उनकी सेफ्टी रहे।

तस्वीर में हिंदुओं का कोई बड़ा त्यौहार दिखाया गया है जिसमें सड़क पे बहुत ज्यादा भीड़ है और मूर्ति को सजा हुआ है फूलों से और उसे लेकर जा रहें हैं और अपने त्यौहार को बहुत ही ज्यादा उल्लास के साथ मना रहें हैं।